यह एक गेट है यहाँ कुर्सी है और यह कुर्सि इरसी रखी हुई है वहां पर भी रेलिंग वायर लगी हुई है।

यहाँ एक आदमी है। यहाँ एक प्लेग्राउंड है। यहाँ है। यहाँ --

यह एक मंदिर है। यह एक है। यह करे ची ची यह काली मैया जिनकी मूर्ति है। शेरा वाली --

यहाँ कुर्सी भी है। यहाँ कुछ पेड़ भी हैं। यहाँ खंबा भी लगा हुआ है।